यहाँ एक मंदिर है। यह देखने में यहाँ एक मंदिर है जो देखने मे अच्छा लगता है। इसके पीछे में एक पर्दा टांगा हुआ है। इसमें एक भगवान बैठे हुए हैं।